अंगूर दो किस्म का है काला अंगूर है।

मछली का दुकान है | ये रसलान है बॉमब्लेट है काटल है।

भी है बड़ा पीपल का गाँछ भी है।

एक घर भी है आगे में छोटा वाला छज्जी --

इतना बड़ा-बड़ा देखिए तो --

और और से ट्रैन चल रहा है ऊपर।

क्या क्या है इसके घर में --

है। यहाँ पे जंगल भी है। यहाँ पे बहोत सारा जंगल है।

कंप्यूटर भी है इसके पाछ । किसके पास इसके पास कंप्यूटर भी है बॉल भी है ऊपर में लगा हुआ।

एक बहुत बड़ा नदी है यहाँ पे बहुत लोग नहा रहा है |